--कलर ब्लू है इसमें से दो लोगों ने एक लाइफ जैकेट पहना हुआ है जिसका कलर ऑरेंज है।

--ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है एक और आदमी है जिसने रोड पे खड़ा है बगल में बहुत सारे छोटे-छोटे--

यहाँ पे एक रोड दिखाई दे रहा है रोड के ऊपर में एक बाइक पार्क्ड है जिसका कलर ब्लू कलर का है ये पल्सर का।